और खरीदने वालों की लाइन लगी पड़ी हुई है यहाँ पे मछलियों के साथ-साथ केकड़े भी मिल रहें हैं यहाँ पे बहुत भाड़ी भीड़ है इनकों खरीदने के लिए।

अंकित है चारों बगल हरियाली ही हरियाली है नारियल के पेड़ चारों ओर से इसे घिरे --

यह एक बहोत ही अच्छा और एक मनोरम दृश्य है।

गेंदा में रंग-विरंग से सजी हुई माला लटकी पड़ी हैं क्यूंकि बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

यह एक सेंट ज़ेवियरस एकेडमी है जो की सी.बी.एस.ई. बेस्ड पैटर्न स्कूल है ।

यह एक रास्ते की दृश्य है जहाँ पे बहुत ही जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक लाइट की वजह से लोग रुके पड़े हुए हैं।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जो कि कंस्ट्रक्शन होने वाला है। चारों ओर हरे-भरे पेड़ लगाए गए हैं।